इस चित्र में बहोत बड़ा सा घर है घर के बाहर एक लेडिज एक बच्चों को पाए हुए खड़ी है गेट के पास।

और अगल-बगल बड़े-बड़े घर दिखाई दे रही है बड़ी सी पेड़ भी लगी हुई है और कुछ बाइक्स भी खड़े है घर के पास --

इस चित्र में एक अ ऊं--

तालाब है तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रही है बाइक्स मोटर खड़ी हुई है।

बेडरूम हैं जिसमें दो पर्दे टंगे खिड़की पर और मच्छरदानी दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहोत सारे जिम के समान रखे गए हैं दौड़ने वाले और बॉडी बनाने वाले बड़े बड़े बॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बहोत बड़ा ब्यूटी पार्लर है जिसमें बहोत सारे अ सामान रखे गए हैं और सामने गैलरी --

इस चित्र में एक बहोत बड़ा सा चट्टान है चट्टान के ऊपर से झरने गिर रहे हैं नीचे नदी की ओर जा रहे--

इस चित्र में एक बहोत बड़ा कैफ़े है कैफे में--

और कपड़े का शोरूम है जो बुटीक शोरूम है जिसमें बहोत सारे अलग-अलग डिजाइन के फ्रॉक्स टंगे हुए है।

नीचे ग्रीन कलर की मेज बिछी हुई है।

हरे हरे घास उगे हुए हैं और बिल्डिंग बनी हुई है।